लड़के जिम कर रहे हैं यहां पे सामने खिड़की भी--

सामने बहुत सारे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं बहुत सारे आदमी यहां घूम रहे हैं।

यहां पे बहोत सारी लाइटे लगी हुई हैं।

यहां पे ए आदमी कम्प्यूटर पर काम कर रहा है यहां पे दो सफेद पन्ने रखे हुए हैं।

यहां पे एक हॉस्पिटल जिसका नाम है--

मेज पर पेपर और पेन रखे हुए हैं दीवार पर घड़ी और--

बाहर फूलों की माला लगाई हुई है यहां पे और भी बहुत सारी दुकानें खुली हुई है यहां पे शीशा भी लगा हुआ है।

नदी में जिसे बाहर निकलते है सामने एक पहाड़ भी दिखाई दे रहा है वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हू--

यहां पर पंखा चल रहा है यहां पे टाइलें भी लगी हुई है यहां पे लाइट भी लगी हुई है।

यहां पर एक ए_टी_एम जिसका नाम एस_बी_आई है।

यहां पे बहुत सारे पंखे लगे हुए हैं बहुत सारे लाइटें लगी हुई हैं स्टेज पर बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं।

यहां पे फूलों से सजाया गया पर एक आदमी--

यहां पर लाइटें भी लगी हुई है पीछे।

यह पे पंख लगे हुए हैं दीवार बहुत सारी फोटो लगी हुई है।

खेल रहे हैं यहां पे बहोत सारे खाली जगह है यहां पे घास उग रही है।

यहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे रहे हैं।

ये एक बहोत बड़ा पहार है यहां पर पहाड़ पर एक लड़का बैठा हुआ है।

यहां पे दरवाजे को बहोत सारे फूलों से--

यहां पे बहोत सारे डब्बे रखे हुए हैं।

यहां पे मेज पर एक हेलमेट रखा हुआ है।

रखी हुई है यहां पे पानी की बाल्टी भी रखी हुई है पीने के लिए।

यहां पे गुलाबजामुन जलेबी घेवर बर्फी कलाकंद बहोत सारी मिठाइयां मिलती है।

यहां पे बिल्डिंग बनी हुई है। यहां पे--

सामने बहोत सारे घर बने हुए है एक सफेद कलर की टंकी रखी हुई है पीछे पेड़ भी उगा हुआ है।

यहां पे एक आदमी साड़ी दिखा रहा है।

यहां पे बहोत सारी बिल्डिंगें भी बनी हुई है उनमें बहुत सारी खिड़की लगी हुई है।